ये एक मजिद है जिसके अंदर बच्चे पढाये जा रहे।

आल सब का सबक सुन रहे है और बच्चे पढाये जा रहे है।

ये कोई प्रोग्राम चल रहा है जिसमे दो स्टेज पर है एक लेडीज और एक जेंट्स --

वहा पे कोई प्रोग्राम चल रहा है बाकि और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जिसके इसे देख कर बस ऐसा लग रहा है की कोई प्रोग्राम है.

ये एक क्रिसमस ट्री लग रहा है ये प्राइमेरी स्कूल का फोटो लग रहा है जिसमे बहुत सारे क्लासेस है ।

जिसके सामने एक और पार्क है बहोत शानदार वाला और इसकी अपनी खुद की बस लग रही है मुझे जिसमें बहोत सारी बस खड़ी हुई है बाहर--

फेक्ट्री है जहा पर बहोत सारे वर्कर खडे हुए है और मुझे लग रहा है ये के नाम है।

ये मुझे एक पार्क लग रहा है।

लाइट जली हुई है बहोत अच्छा लग रहा है अंदर सेतो।

कोई बिल्डिंग बनाने की तेयारी कर रहे है ये हमारे इंडियन लेबर ।

यह कोई मीटिंग चल रही है जिसमें हमारे सरदार लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं।

ये एक लाइब्रेरी है जिसमे तरह तरह की बुक रखी हुई है।

इसके एक लगा है और एक आदमी केन लेके जा रहा है।

ये एक बहोत पुराना पार्क है।

और ये बहोत अच्छी लग रही हैं जिम जिसके अंदर लाइट जल रही है बहोत सारी।

जिसके बराबर में शायद कुछ खाने पीने के भी मिलता है जिसके पोस्टर पर जय सीया राम जय --

ये एक पार्क है जिसके अंदर छोटी छोटी गाय है।